बुक दुकान में चार्ज हे बै क अ हइ इंसान एक ठे औरत थे ओ चाय पियत कप में अउ तीन ठे बच्चा हे एक ठे बच्चा मास्क लगाईस हे बैठईस हे बहोत सारा कुछ कुछ रखाये हे।

बहोत सारा फल फूल क मूर्ति बनीसे पीछे साइड पेड़ हे बड़ा- बड़ा लाइट वाला खम्बा भी हे।

स्कूटी खड़ा है दु तीन गो रास्ता गईस हे. कच्चा क आर-पार घास हे शोपीस वाला--

निस दिन चलता है सवड़ यहाँ मत खोज यहाँ मानव--

ए भी डांस वाला स्टेज हे जे में लड़की मन साड़ी पहिनीन हे एक ठो लड़का हे झंडा पकड़ के खड़ा है लड़की बन भी कोई घुटना में खड़ा हे कोई--

अंदर में भी सीढ़ी दिखत हे दरवाजा भी दिखत हे अउ कुछ कुछ लिखइस हे ओ पहचान में नइ आथे।

ए मछली का दुकान हे ओमे बहुत सारा मछली रखल हे बड़ा-बड़ा एक ठी आदमी बइठिस हे कुर्सी बेचे बर--